जलती हुई दिखाई दे रही है बिजली के तार भी हमें दिखाई दे रहे हैं |

छत हमें दिखाई दे रही है ऊपर वायर भी हमें दिखाई दे रहे हैं बिजली के |

और व्यक्तियाँ नजर आ रहे हैं सामने एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है बड़ी सी।

और यहाँ पर हमें फुग्गे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

बिजली का एक बड़ा सा खम्बा भी दिखाई दे रहा है तार भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे है।

जहाँ पर कालीन बिछा हुआ दिखाई दे रहा है दरी भी बिछी हुई दिखाई दे रही है।

जिसमे डेकोरेशन किया हुआ है पर्दो का ऊपर फ्लावर भी लगे हुए दिखाई दे रहे है।

एक पाइप लगा हुआ दिखाई दे रहा है खिड़की अन दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर।

झंडा लगाए दिख रहा है इसपे --